इस घर में बहुत सारे लोग आये हुए हैं | यहाँ एक शादी हो रही है और यहाँ बहुत सारे लोग इस शादी में शामिल हुए हैं।

इस बाजार में बहुत सारी मछलियाँ और बहुत बड़ी-बड़ी मछलियाँ रखी हुई हैं।

इस नदी का पानी एकदम साफ है और यह नदी बहुत ही गहरी है।

यहां बहुत सारे लोग स्नान करने के लिए आते हैं।

एक अस्पताल है अस्पातल में यहाँ कुर्सी के ऊपर बहुत सारे लोग बैठे हुए है।

और एक केक रखा हुआ है इस केक को बहोत अच्छे तरीके से सजाया गया है।

यह एक आई.सी.आई. बैंक है।

इस पूल पर यहाँ कुछ लोग खड़े हैं और इस नदी के पानी को देख रहे हैं।

इस ए.टी.एम. से लोगों को बहुत सारी सुविधाएं मिलती है और यह ए.टी.एम. लोगों के लिए बहुत सुविधादायक भी है।

और इस स्कूल की दीवारों पर स्वतंत्रता सेनानियों के फोटो लगे हुए है।

एक दुकान है | इस दुकान में साइकिल और बाइकों को ठीक किया जाता है।

और यहाँ बहुत सारे लोग खाने के लिए आए हुए हैं ये होटल बहुत ही अच्छा है।

और यह एक ऑफिस है | इस ऑफिस में एक टेबल और तीन-चार कुर्सियां रखी गई हैं |